यहाँ पे दो पंखे लगे हुए है एक ऐसी भी लगा हुआ है।

जिसमें उसके नाक से कुछ पानी के फव्वारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं।

एक व्यक्ति खड़ा है रोड के किनारे खंभे पे लाइटे लगी हुई है।

जोकि तीन तरफ की दीवालों से घिरा हुआ है।

उसके पीछे बहोत सारे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए है।

इस समय जहां पे वो उपस्थित है या हो सकता है वो कुछ कोई दुकान हो या कोई उपहार केंद्र।